रस्ता है दूर में बड़ा बड़ा पेड़ है इमारत का यहां पे समय में एक गम हो जाता है ग्लोब रखा हुआ है बड़ा सा।

ये गेट का सामने से तीन औरत साड़ी पहन के और एक आदमी के शर्ट पैंट पहन के खड़ा है उसके पास में एक लड़का है ल--

बोतल में भी कुछ चीज रखा हुआ है बॉउल में भी रखा हुआ है।

यहां पे कॉफी शॉप दिखाई दे रहा है जहां पे कॉफी शॉप का एक बंदा--

टाइट करके रखा हैं बिल्डिंग से ए मैट को फिर साइड में गारडोल वाले में बहोत बड़े- बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

सजा के केक पैक करके रखा है तीनों थान में एक बड़ा सा पास में दो छोटा छोटा उसके सामने एक चेयर रखा हुआ है नीचे में बहुत सारे लाइन लगा हुआ है।

यहां पे एक गोडाउन है जहां पे बोरी में बहुत सारे माल लगा हुआ है गोडाउन के अंदर में टीना का शेड है गोडाउन का यहां पे लेबर लोग--

पास में रास्ते है रखे उस पर में कुछ बड़ा बड़ा बिल्डिंग है बहुत सारे आदमी और लोग बच्चे लोग यहां पे खड़ा है।

साइड में एक लड़का खड़ा है पेंट शर्ट पहन के और दूसरा तरफ गेट का बाहर एक बंदा खड़ा है शर्ट पेंट पहन के पास में एक गाड़ी खड़ी है पीछे है।